पे एगो आदमी बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर में आप एक घर को सजा हुआ देख सकते हैं।

इस तस्वीर में एक मस्जिद को दिखाया गया है साथ ही एक मंदिर भी यहाँ पे देखा जा सकता है जहाँ लाइटे जल रही है।

ये तस्वीर में एक ईमारत पे दो व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर मे आप एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर छोटे-छोटे मूर्तियाँ देख सकते हैं।

जिसके सामने एक जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर बिजली का दिख रहा है।

यह तस्वीर में आप एक ईमारत को देख रहे हैं ।

और यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है।